एक पुरानी मंदिर है उसके ऊपर पुरे घास जमी हुई है उनके--उसके बगल में पेड़ है हरे कलर का--

काले कलर का अ गेट है और ओर मेदान है जो मेदान मे हरे कलर का घास जमा हुआ है।

एक बस स्टॉप है जिसमे बस और स्कार्पियो खड़ी हुई है ।